और यहां पर झूमर भी लगा हुआ है।

और एक खुली है जो दुकाने बंद है उनका रंग नीला है।

सफेद कलर का ऑफिस या कोई बैंक या कोई--

ये एक एस_एम कॉलेज है और यहां पर बहोत से लोग आते जाते नजर आ रहे हैं।

जो पेड़ लगे हुए है वो कैरी में लगे हुए है।

ये एक कैफे है और कैफे के ऊपर ही अपुचिनो ब्लास्ट लिखा हुआ है।

और यहां पर एक टेबल रखा हुआ है जिस पर बहुत सा सामान रखा हुआ है।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

एक आदमी यहां चेयर पर बैठा हुआ है।

जिसमे बहौत से कलर्स डिजाइन भी पड़ी हुई है।

और पास में ही फ्लावर्स भी रखे हुए हैं।

आसपास में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस जगह पर रैक्स में बहुत से कपड़े भरे हुए हैं।

ये एक जिम है यहां पर कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं।

इस जगह पर रैक्स में बहोत सी बुके रखी हुई है।

एक आदमी खड़ा है जिसने एक बुक पकड़ी है और उस बुक पर रेड कलर का डब्ल्यू_ए_आर वार लिखा हुआ है।

पेड भी लगा हुआ है और यहां पर फर्श बनी हुई है जिसका कलर ग्रे है।

और सामने ही एस_बी_आई ए_टी_एम या फिर कोई बैंक है।

और यहां पर एस_बी_आई का बैनर भी लगा हुआ है।

और उनके आस पास बहुत से लोग खड़े हैं।

सामने ही एक वाइट कलर का घर नजर आ रहा है।

सामने ही एक पिज्जा हट है और उसका कलर ग्रे है।

और जो रैक्स हैं उनके ऊपर कांच के जार लगे हुए हैं।